एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो की बोहत बड़ा पेट्रोल पंप है एंड यहाँ पे --

जोकि एक फर्नीचर बना हुआ है जोकि बहुत हि ब्यूटीफुल फर्नीचर है एंड यहाँ पर फर्श बहुत --

और ये सन सेट का टाइम है ।

दिखाई दे रहा है यहाँ पे गार्डन बना हुआ है ईंट रखी हुई है यहाँ पे कई सारी एंड यहाँ पे --

ये एक सोहा पार्लर शॉप दिखाई दे रही है शेयर --

अम बिल्डिंग खड़ी हुई है और द यहाँ पे हरी भरी घांस रगी हुई है ।